जो आप उधर ठहरने के लिए सोच रहे है तो यह बहुत अच्छा प्लेस है --

हॉस्पिटल में लिया हुआ तस्वीर जहां का गेट दिख रहा है और सामने व्हील चेयर भी दिख रहा है।

एक होटल लक्ष्मी होटल का सामने का तस्वीर जो उसका होटेल का सटी बिल्डिंग भी दिख रहा है।

सफेद रंग से रंगा हुआ ये मंदिर का तस्वीर है।

यहां पे एक बोर्ड लिखा हुआ है ए.वी.एम. कटेज का।

भगवान महाबीर उसके साथ दो चेले का एक सुंदर सा मंदिर अ जो --

ये तस्वीर दिख रहा है एक बिल्डिंग बनाने का खड़ा हुआ तस्वीर जहाँ पर नया घर बन रहा है एक टेरेस के साइट में।